काले रंग की साड़ी न-- नीली-- लाल रंग की साड़ी सभी बच्चे ड्राइंगस बना रहे है और कागज पड़े हुए है।

सामने बेंच है मे बहुत सारे बच्चे बेठे हुए है जो नीले रंग के शर्ट पहने हुए है दीवार का रंग सफेद ओर कत्थई रंग का है ऊपर के साइड पे पंखा चल रहा है।

हम एक साइड पे बहुत सारे बच्चे निचे बेठे हुए हैं जो ड्राइंग बना रहें हैं कुछ कलर कर रहें हैं कुछ गोदी में रख के कलर कर रहें हैं।

छोटे छोटे बच्चे बेठे हुए है जो ड्राइंग्स बना रहे है और पैंट रहे है।

घर बनाया जा रहा है जो यह मसाले को अंदर मशीन से दबाया जा रहा है। एक लड़का बगल में खड़ा है।

एक खम्बा गड़ा हुआ साइकिल से एक आदमी जारा सफेद रंग का शल्ट पहना हुआ है।

बड़ा सा टेबुल रखा हुआ है और बहुत सारी बुक रखी गई है एक कम्पूटर रखा गया है।

साइड पे दुकान है जो बोहोत सारी बुक रखी गई है कुछ लोग खड़े है एक आदमी खड़ा जो नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है अगल बगल जो खड़े सफ़ेद रंग के शर्ट पहना ऊपर के साइड पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बड़ा सा गेट बना हुआ है जो कच्चे रंग का गेट है बहुत सारी गाड़िया सामने के साइड पे आ रही है जो काले रंग की गाड़ी है हेलमेट पहने हुए एक सामने एक छोटे बच्चे बेठाए हुए है।

ये पुल के ऊपर एक ऑटो खड़ी है जो हरे रंग की पीले रंग की ऑटो हैबगल में डीबाईडर बना हुआ हैनीले रंग की अंकल खड़े हुए हैं जो मास्क लगाये हुए हरे रंग का शुवेटर पेहने हुए है।

सामने एक लड़का खड़ा है और नीचे साइड में एक बड़ी-सी नाली है बड़ी-सी बिल्डिंग बनी हुई हैं| नीचे साइड में बड़ा -सा गार्डन है इसपे हरे रंग की घांस हैं और हरे रंग की पेड़ हैं| शायद लड़के ने नीले कलर का शर्ट पहना हुआ है।